ये पिक्चर अ सब्जीमंडी की है इसमें काफी टमाटर पड़े हुए हैं।

जी आगे एक बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के ऊपर कलश लिखा हुआ है।

और इसके मेन दरवाजे के साइड में एक टेंची रखी हुई है।

हेलो रात का समय है लोग उम्म बस के इंतजार में थोड़ा लेट आएगी बस और रेस्ट कर रहे हैं तो ये अह सीटें बड़ी--

तो अभी डिनर की तैयारी होने वाली है अभी लोग आने वाले जहां पर लोग डिनर करेंगे।

पांच छे सात लेडीज खड़ी हैं।

जहां पर छोटा छोटा घास है इस पार्क में बच्चे बैठे हुए हैं झूलने में--

अ के आगे एक पार्क है पार्क में छोटा छोटा घास लगा हुआ है।

हिरण खूब इंजॉय कर रहे है हिरण एक दूसरे को देख रहे है ए ब बो साथ मे एक आम का पेड़ है।

यहां पर काफी अह सामान रखा हुआ है काफी सामान कुछ पाइप के टुकड़े जैसे बांध के टंगे हुए हैं।

कुछ ग्लास हैं चम्मच हैं तो ये स स बहुत सुंदर हैं काफी अह औरतें और जेंट्स यहां पर--